लिबर ऑफिस राइटर के टेक्स्ट टाइपिंग और बुनियादी स्वरूपण यानि बेसिक फॉर्मेटिंग के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्नलिखित सीखेंगे
राइटर में अलाइनिंग टेक्स्ट बुलेट्स और क्रमांकन नम्बरिंग राइटर में कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन्स
बोल्ड अंडरलाइन और इटालिक्स ऑप्शन्स
राइटर में फॉन्ट नेम फॉन्ट साइजफॉन्ट कलर
डॉक्युमेंट्स में इन विशेषताओं का उपयोग करके प्लेन टेक्स्ट डॉक्युमेंट्स की तुलना में पढ़ने के लिए अधिक आकर्षित और अधिक सरल बनाएँ
यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में GNUलिनक्स का उपयोग कर रहे हैं और लिबर ऑफिस सूट वर्जन 334
हम पहले राइटर में अलाइनिंग टेक्स्ट के बारे में सीखेंगे
आप राइटर में अपनी पसंद का एक नया डॉक्युमेंट ओपन कर सकते हैं और इन विशेषताओं को कार्यान्वित कर सकते हैं
चूँकि पिछले ट्यूटोरियल में हम पहले से ही resumeओडीटी नामक फाइल बना चुके हैं
हम इस फाइल को ओपन करेंगे
हमने पहले से रिज्यूम शब्द टाइप किया है और इसे पेज के केन्द्र में अलाइनएकरेखित किया है
अतः चलिए शब्द वर्डचुनिए औरAlign Leftपर क्लिक करें
आप देखेंगे कि रिज्यूम शब्द लेफ्ट अलाइंड हो गया है अर्थात यह डॉक्युमेंट पेज के हाशिये की बायीं ओर हो गया है
यदि हम अलिग्न राइट पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि रिज्यूम शब्द अब पेज की दायीं ओर अलाइन हो गया है
यदि हम जस्टिफाई पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि रिज्यूम शब्द अब इस तरह अलाइंड हो गया है कि टेक्स्ट पेज के दायें और बायें हाशिये के मध्य समान रखा है
यह विशेषता अधिक स्पष्ट होती है जब आपके पास टेक्स्ट की लाइन या पैराग्राफ हो
इसे अन्डू करते हैं
बुलेट्स और क्रमांकन उपयोगित होते हैं जब स्वतंत्र प्वॉइंट लिखा जाता है
प्रत्येक प्वॉइंट बुलेट और क्रमांक से शुरू करें
इस तरह डॉक्युमेंट में लिखे गये विविध प्वॉइंट्स के बीच भेद कर सकते हैं
यह मेन्यू बार में पहले फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करके और फिर बुलेट्स एंड नंबरिंग पर क्लिक करके किया जाता है
डॉयलॉग बॉक्स जिसे आप बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखते हैं वह आपको विविध टैब्स में विविध शैलियाँ स्टाइल्स प्रदान करता है जिसे आप अपने डॉक्युमेंट में लागू कर सकते हैं
क्रमांकन नंबरिंग ऑप्शन को चुनकर उसी तरह होता है और प्रत्येक लाइन नये क्रमांक से शुरू होगी
अतः चलिए नंबरिंग टाइप स्टाइल के अंतर्गत दूसरी स्टाइल पर क्लिक करते हैं
अब ओक बटन पर क्लिक करें
अब आप अपने पहले स्टेटमेंट को टाइप करने के लिए तैयार हैं
चलिए टाइप करें NAME रमेश अब स्टेटमेंट टाइप करने के बाद Enter की प्रेस करें आप देखेंगे कि नया बुलेट प्वॉइंट और नया वृद्धिशील नम्बर बन गया है
यहाँ आपके चुने प्रारूप के प्रकार के आधार पर बुलेट्स के भीतर बुलेट्स साथ ही साथ नम्बर्स के भीतर नम्बर्स हो सकते हैं
अतः हम फादर्स नामे कोलोन महेश के रूप में रिज्यूम में दूसरा स्टेटमेंट टाइप करते हैं
फिर से Enter की प्रेस करें और मदर्स नामे कोलोन श्वेता टाइप करें
उसी तरह हम अलग प्वॉइंट्स के रूप में फादर्स आक्यूपेशन कोलोन गवर्नमेंट सर्वेंट और मदर्स आक्यूपेशन कोलोन हाउसवाइफ टाइप करेंगे
आप क्रमानुसार बुलेट्स के लिए इंडेंट बढ़ाने और घटाने के लिए टैब और शिफ्ट कीज का उपयोग कर सकते हैं
बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन बंद करने के लिए पहले कर्सर हाउसवाइफ शब्द के आगे रखें और पहले एंटर की पर क्लिक करें और फिर बुलेट्स एंड नंबरिंग डॉयलॉग बॉक्स में नंबरिंग ओफ ऑप्शन पर क्लिक करें
आप देखेंगे कि बुलेट स्टाइल दूसरे टेक्स्ट के लिए अब उपलब्ध नहीं है जिसे आप टाइप करेंगे
ध्यान दें कि हमने अपने डॉक्युमेंट में नामे शब्द दो बार टाइप किया है
फिर से उसी टेक्स्ट को टाइप करने के बजाय हम राइटर में कॉपी और पस्ते ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं
तो चलिए सीखते हैं कि यह कैसे करें
अब हम मदर्स नामे टेक्स्ट से नामे शब्द डिलीट कर देते हैं तथा कॉपी और पेस्ट ऑप्शन का उपयोग करके नामे शब्द फिर से लिखते हैं
नामे शब्द के साथ कर्सर ड्रैग करके फादर्स नामे टेक्स्ट में पहले नामे शब्द को चुनें
अब माउस पर राइट क्लिक करें और कॉपी कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करें
मदर्स शब्द के आगे कर्सर रखें
फिर से माउस पर राइट क्लिक करें और पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करें
हम देखेंगे कि नामे शब्द अपने आप ही पेस्ट हो गया है
यहाँ इन ऑप्शन्स के लिए शार्टकट कीज भी हैं कॉपी करने के लिए CTRLC और पेस्ट करने के लिए CTRLV यह विशेषता बहुत उपयोगी है जब डॉक्युमेंट्स में अधिक मात्रा में समान टेक्स्ट लिखना हो जहाँ आपको पूरा टेक्स्ट फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है
आप डॉक्युमेंट में टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए कट और पेस्ट ऑप्शन का उपयोग भी कर सकते हैं
अब देखते हैं कि इसे कैसे करें
चलिए पहले मदर्स शब्द के आगे से नामे शब्द डिलीट करते हैं
इस शब्द को कट और पेस्ट करने के लिए पहले फादर्स नामे स्टेटमेंट में से नामे शब्द को चुनें
माउस पर राइट क्लिक करें और फिर कट ऑप्शन पर क्लिक करें
ध्यान दें कि FATHERSशब्द के आगे अब यहाँ नामे शब्द नहीं है जिसका मतलब है कि यह कट या डिलीट हो गया है
अब मदर्स शब्द के आगे कर्सर रखें और माउस पर राइट क्लिक करें
पस्ते ऑप्शन पर क्लिक करें
आप देखेंगे कि अब शब्द यहाँ मदर्स शब्द के आगे पेस्ट हो गया है
कट के लिए शार्टकट की है CTRLX चूँकि टेक्स्ट को कॉपी करने और कट करने में केवल इतना अंतर है कि कॉपी ऑप्शन इसके स्थान पर मूल शब्द रखता है जहाँ से यह कॉपी किया गया है जबकि कट ऑप्शन इसे इसके मूल स्थान से पूर्णरूप हटा देता है
चलिए नामे शब्द फादर्स के आगे पेस्ट करें और जारी रखें
चलिए एक नई हेडिंग टाइप करें जैसे एड्यूकेशन डिटेल्स
राइटर में बुलेट्स एंड नंबरिंग के बारे में सीखने के बाद हम खीखेंगे कि किसी भी टेक्स्ट का फोंट नामे और फोंट साइज कैसे बदलें या लागू करें
अब ऊपर फार्मेट टूलबार में हमारे पास फोंट नामे नामक एक स्थान है
फॉन्ट नेम आमतौर पर डिफॉल्ट से लिबरेशन सेरिफ के रूप में सेट किया जाता है
फॉन्ट नेम का उपयोग आपकी इच्छा के अनुसार टेक्स्ट में फॉन्ट के प्रकार को बदलने और चुनने के लिए किया जाता है
उदाहरणस्वरूप चलिए अलग फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज में एड्यूकेशन डिटेल्स हेडिंग देते हैं
तो पहले टेक्स्ट एड्यूकेशन डिटेल्स को चुनें फिर फोंट नामे स्थान में डाउन ऐरो पर क्लिक करें
आप ड्रोप डाउन मेन्यू में फॉन्ट नेम ऑप्शन्स के अनेक प्रकार देखेंगे
लिबरेशन सांस ढूंढ़ें और इस पर क्लिक करें
आप देखेंगे कि चयनित टेक्स्ट का फॉन्ट बदल गया है
फोंट नामे के पास में फोंट साइज है
जैसा कि नाम से पता चलता है फोंट साइज का उपयोग या तो चयनित टेक्स्ट या नये टेक्स्ट के साइज को घटाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है
जो भी आप टाइप करना चाहते हैं
अतः हम पहले टेक्स्ट एड्यूकेशन डिटेल्स चुनते हैं
फॉन्ट साइज अभी 12 दिख रहा है
अब फोंट साइज फील्ड में डाउन ऐरो पर क्लिक करें और फिर 11 पर क्लिक करें
आप देखेंगे कि टेक्स्ट का फॉन्ट साइज कम हुआ है
उसी तरह से फॉन्ट साइज बढ़ाया जा सकता है
फॉन्ट साइज के बारे में सीखने के बाद हम देखेंगे कि राइटर में फॉन्ट का कलर कैसे बदलें
फोंट कलर का उपयोग आपके डॉक्युमेंट के टेक्स्ट या कुछ टाइप्ड लाइन्स का कलर चुनने के लिए किया जाता है
उदाहरणस्वरूप चलिए हेडिंग एड्यूकेशन DETAILSको कलर करें
तो फिर से टेक्स्ट एड्यूकेशन DETAILSको चुनें
अब टूल बार में फोंट कलर ऑप्शन में डाउन ऐरो पर क्लिक करें और फिर टेक्स्ट में लाइट ग्रीन कलर लागू करने के लिए लाइट ग्रीन बॉक्स पर क्लिक करें
अतः आप देखेंगे कि हेडिंग अब हरे कलर में ग्रीन हो गई है
फॉन्ट साइज ऑप्शन के आगे ही आप बोल्ड इटालिक और Underlineनामक तीन ऑप्शन्स देखेंगे
जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये आपके टेक्स्ट को या तो बोल्ड या इटालिक या अंडरलाइंड करेंगे
तो पहले हेडिंग एड्यूकेशन डिटेल्स को चुनें
अब टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बोल्ड आइकन पर क्लिक करें
आप देखेंगे कि चयनित टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है
उसी तरह यदि आप इटालिक आइकन पर क्लिक करते हैं तो यह टेक्स्ट को इटालिक में बदल देता है
अंडरलाइन पर क्लिक करें
अंडरलाइन आइकन पर क्लिक करने पर आपका टेक्स्ट अंडरलाइन होगा
आप देखेंगे कि चयनित टेक्स्ट अब अंडरलाइन हो गया है
हेडिंग को बोल्ड और अंडरलाइंड रखने के लिए इस पर फिर से क्लिक करके इटालिक ऑप्शन को अचयनित करें और अन्य दोनों ऑप्शन्स को चयनित रहने दें
इलिए हेडिंग अब बोल्ड के साथ ही साथ अंडरलाइन्ड भी है
अब हम लिबर ऑफिस राइटर पर स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर हैं
संक्षेप में हमने निम्न सीखा हैः राइटर में टेक्स्ट अलाइन करना
बुलेट्स और नम्बरिंग
राइटर में कट कॉपी और पेस्ट ऑप्शन्स
बोल्ड अंडरलाइन और इटालिक्स ऑप्शन्स
राइटर में फोंट nameफॉन्ट नेम फोंट sizeफॉन्ट साइज फोंट colorफॉन्ट कलर
व्यापक नियत कार्य
बुलेट्स और नंबरिंग को सक्रिय करें
स्लाइल का चुनाव करें और कुछ प्वॉइंट लिखें
कुछ टेक्स्ट चुनें और इसके फॉन्ट नेम फ्री Sansमें रखें और फॉन्ट साइज को 16 में बदलें
टेक्स्ट को इटालिक्स करें
फॉन्ट कलर को लाल रंग में बदलें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो को देखें
यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का सार देता है
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड़ करके भी देख सकते हैं
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकेन ट्युटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाते हैं
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं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
भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है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
स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल dotओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है
मैं रवि कुमार आईआईटीबॉम्बे की ओर से विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद